ये सब दीवार सी बनी हुई है| इसमे एक गेट भी दिया गया है जो सिल्वर कलर का है| ये काफी अच्छा लग रहा है| सीढ़ी भी बनी हुई है। बड़े-बड़े--

इसमें ये भैया खिड़की पे खड़े हुए हैं। दो भैया खड़े हुए हैं। एक भैया हाथ हिला रहें हैं जो रेड टी-शर्ट पहने हुए हैं ब्लैक पैंट पहने हुए हैं।

ये एक गाँघी ग्राउंड का है। इसमे ये मूर्ति बनी हुई है और ये भी पहले से बना हुआ है। इसमे यो अंकल जी यही से देख रहे है काफी गौर से।